के अंदर बहुत सारे लोग नमाज पढ़ रहे हैं।

इनमें बहुत सारे सोफे एक टेबल है इस टेबल पे मिनरल वाटर रखा हुआ है।

उसके बाहर एक बैनर लगा हुआ है।

इसके ऊपर ग्लास लगी हुई है।

पार्क की साइड में एक बड़ी सी मूर्ति है मूर्ति के ऊपर त्रिशूल बना हुआ है।

इस फोटो में बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के बाहर बहुत सारी स्कूटी और बाइक पार्क की गई है।

जिसके गेट पे बहुत सारे लोग जो खड़े हुए हैं।

इसके साइड में मैदान पे बहोत सारे बच्चे खेल रहे हैं।

रैक पे बहुत सारी साइकिलो की टायर्स रखी हुई हैं इनमे से कुछ साइकल बच्चों की भी हैं।

टिशू पेपर रखा हुआ है।

लाइट में बहुत सारे चेयर हैं।

इस फोटो में एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है।

इस फोटो में जिम है इस दिन में लोग वर्कआउट करते हैं।

पीछे दुकानें और बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है जिसके साइड में एक बहुत बड़ा पेड़ है।

ये सब मंदिर पे है इसके ऊपर एक घंटा लगा हुआ है।